दिखाई दे रही है। यहा एक बोर्ड लगा हुआ लाइट का दिखाई दे रहा है। याहा आ लकड़ी का गेट लगा हुआ है साइक मे दिखाई दे रहा है। यहा ये नीले कलर का पर्दा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

कबूतर है जिनका पील ये किसिका घर--

लिमिट में यहां अय्यर वहां बहुत कल डाल भला दिखाई देना है यहां नौली में धंधेला दे देता है। यहां --

ईस इमेज मे यहाँ बहुत सारे दुब्बारे लगे हुए पिक कलर व्हाइट कलर ब्लू कलर एसे दिखाई दे रहे।

इमेज मे यहाँ बहुत सारे माताए हुए कुछ देवी देवता जैसे दिखाई दे रहे है पूजा अर्चना करते हुए करते हुए दिखाई दे रहे